जहां पर बेहतरीन दिखे आगे की और थोडा हरियाली बगीचा फ्लावर दिखे थोड़ा सा उसके बाद बड़े बड़े छोटे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है जहां पर नीचे की और पानी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर एक मस्जिद जैसा दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ ऊपर कि और सुनहरे कलर कलर्स टाइप का दिखाई दे रहा है।

जी हा प्रतिम प्रतिमा दिखाई दे रही है जो गोल्डन कलर से दिखाई दे एक महावीर जी कि प्रतीमा जी की प्रतिमा भी बीच में बैठी हुई हैं।

पुले दिखाई दे रही जहां पर और कुछ झूले दिखाई दे सफ़ेद कलर के हैं।

उसके आगे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और सामने कि ओर यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा हैं जहां पर एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं हरा सा--

और पीछे कि और थोड़ी हरयाली दिखाई दे रही हैं।